और एक एग्जास्ट लगा हुआ है और एक सीलिंग फैन भी लगा हुआ है पेंट यहां पास क्रीमी स्किन कलर का है।